एक सफेद रंग की लाइट लगी हुई है।

बोतल के अंदर सफेद रंग का पानी भरा हुआ है।

पीछे एक नीले रंग की दीवार है।

बहुत सारी अलग अलग रंग की चादरें हैं।

बहुत सारे गत्ते के डब्बे रखे हुए हैं।

पीछे एक बहुत बड़ा लोहे का खंबा है।

छत पर लाइट भी लगी हुई है।

बहुत सारे गत्ते के डब्बे भी रखे हुए हैं।

बहुत सारे पौधे भी लगे हुए है।

तीन व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

दो हरे रंग की खिड़कियां लगी हुई हैं।

गाड़ियां कपड़े से ढकी हुई हैं।

बहुत सारी कांच के शीशे हैं।

ऊपर सफेद रंग की लाइटे लगी हुई हैं।

वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं।

पिक्चर और ब्रेड लिखा हुआ है।

बहुत सारी मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई हैं।

एक बहुत बड़ा पत्थर है।

और व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

एक बहुत बड़ा पेड़ है।

दीवार पर अमूल दूध लिखा हुआ है।

बहुत सारे स्टील के भिगोने भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक कच्ची ईटों का बहोत बड़ा मकान है।

अंदर तीन चार व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

इस फोटो में एक एल_इ_डी लगी हुई है।

इस फोटो में बहुत सारी लोहे की कुर्सियां हैं।

एक लकड़ी की कुर्सी भी है।